और रोड है कुछ सड़क है इतना मस्त कितना हरा हरा हरा दिख रहा है।

बोहुत खिड़की खिड़की साथ में लोग देख रहा है।

स्कूल के बाउंड्री घिरा हुआ है।

देखिए ईटा लगाया है और--

घर बना रहा है चार कुर्सी हैं ।